ये एक विशाल न नदी या समुन्द्र का एक हिस्सा हम यहाँ देख सकते हैं ।

क्यूंकि यह बिल्डिंग काफी बड़ी है सामने काफी बड़ा-सा खुला मैदान है।

इस समय हमें यहाँ जो दिखाई दे रहा है तो बोर्ड दिखाई दे रहे हैं जो की युको बैंक के बोर्ड हैं।

यदि हम उनको एक साइड से देखेंगे तो ये सारे हमें एक के पीछे एक दिखाई देंगे जो की बहुत आकर्षक और सुन्दर लग रहे --

यह दृश्य बड़ा ही आकर्षक है | यहाँ पर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं ।

और वे पेड़-पौधो की देख रखे कर रहा है और उनमे दवाइयाँ छिड़काव कर रहा है ।